इस चित्र में ॐ साईनाथ नाम वाला एक नहीं छोटी लारी दिखाई दे रही है उसमे रंगीन-रंगीन के आइसक्रीम मिठाई दिखाई दे रहे है।